एक बेंच दिखाई दे रही है जिसपर पुट्ठे का बक्सा रखा हुआ है।

दीवाल पर फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है।

तीनो के गले में हार नजर आ रहे है।

एक बड़ा हाथी नजर आ रहा है जिसको कपड़े से सजाया हुआ है।